और उनको मेजर करने --

अ इवनिंग का टाइम हो रहा--

ये एक शॉप है जहाँ पर फुलों की माला टंगी हुई है यहाँ पर चार पांच व्हाइट कलर की फूल की माला है।

और उपर एक फ्लोर है। बाजू में एक ब्लू कलर का गेट है।

गणपति है और तीन --

और पेड़ का शॅडोव आ रहा है साइड में--